यह एक मुर्गा फॉर्म है।

और यहाँ पे लाइट लगी हुई हैं और यहाँ पे बहुत सारे मुर्गे हैं सफेद कलर के जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।

ये एक काला कलूठा सा लड़का है।

और उसके पीछे एक दीवार है सुंदर सा दीवार।

कड़ा है जो कि लोहे की कड़ी लग रही है।

और सेफ भी हैं गाड़ियों के लिए गाड़ी सब पार्किंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये।

यह टमाटर और भिंडी औ मिर्ची और प्याज --

यह मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह कही मार्केट में रखी गई है और इसकी तस्वीर ली गई है।

यह बन रहा है इसमें लकड़ियाँ चारों तरफ से लगी हुई है ओर यह पतली सी है लंबी सी है।

इस पर टैग लगा हुआ है भारत पेट्रोलियम का।

जो की रंग-बिरंगो बिरंगी कलरों से की गई है।

जो तीन चक्के लगे होते हैं यह बहुत ही कोम्फर्टेबल होता है इसे कोई भी आसानी से चला सकता है।

यह बस पे अअं व्हाइट कलर पेंट चढ़ाई हुई है।

और इस बस में लिखा हुआ है जय माता दी।